और के हिसाब से ये लुगाई भीड़ हो री है के हिसाब से काम हो रेहो है अंदर तो बीके बारा मे बताय रखे है और --

देखने मे अच्छों लाग रो है लेकिन या मस्जिद है ई के पीछे की जिगह पड़ी है इक माइन इया लागरों जाने कोई गंदों पानी भरेडों है तो या मने बुरों लागरों है सफाई --

इ फोटो के अंदर जिम सेंटर दिखाईडॉ है और जिम सेंटर के अंदर हर प्रकार से सेहत ने बना सका हा सेहत अच्छी रह सके है।

या नज़ारे के गाँव को नज़रों हा जो खेलने को मैदान हो बई मैदान पे जिम्मे सूर्य असत हो और तो टाइम दिखा रिया है।

यह तस्बीर बारे की साइट की लाग रही होटल की --

खेल को मैदान है जिमे लोग क्रिकेट खेल रहा है कुछ लोग खेल रहा है कुछ लोग देख रहे है बहुत बड़ो ग्राऊंड है।

और एक है जो एम्प्लोयी है जो कोई काम से जा रियो है कुतो अठे बैठो है कड़ी नजर --

यह एक नदी को नजारो है देखने में बहुत सुनो लाग रहियो है।